यहाँ पे लग रहा है मार्केट दिख रहा है मार्केट में बहुत सारा आदमी हैं बाइक दिख रहा है और बहुत घर दिख रहा है साइकिल दिख रहा है टैम्पू दिख रहा है दुकान दिख रहा है।

इस यहां पे स्टे यहां पे स्टेट बैंक ए_टी_एम जमुई में है। यहां पे बोहोत बड़ा गेट लेकिन दरवाजा बंद है। यह स्टेट बैंक ए_टी_एम है। बहुत सारा लोग पैसा निकाल --